यहा एक म पार्लर स पार्लर दिख रहा है पार्लर तीन मीना मिरर लगे हुए है उसके सामने तीन चेयर रखी हुई हैं ।

ये भी एक पार्लर है जिसका प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर का दिया है उसमें एक छोटा सा आईना लगा हुआ है काउंटर बना हुआ है उसमें दो चेयर रखी गई है एक ब्लैक और एक रेड इसकी दिवाल वाइट और क काले कलर की पट्टी है।

यहाँ पर दो ही इ रिक्शा खड़े हैं दोनों रिक्शों का कलर लाल है इस पर तीन चक्के हैं एक चक्का स्टेपनी का दिया गया है एक इ रिक्शा पीछे है।

ये एक ई रिक्शा है या ई रिक्शा की छत काले कलर की है और वह लाइट पीले कलर का है उसमें स्टैपनी लगी हुई है या जिस भवन के सामने खड़ा है वो लाल कलर का है।

ये एक ई-रिक्शा है ये सुरमे कलर का दिख रहा है इसके सामने बड़ी सी कांच लगी हैं उसकी छत भी सुरमे कलर की हैं इस में तीन चक्खे लगे हुए हैं।

ये एक ई-रिक्शा है जो पीले और काले कलर का है इसमें सामने बड़ी काँच लगी हुई है इसकी जो छत है वो पीले कलर की हैं इसमें यहीं है जहाँ खड़ा है।

वो सीमेंट वाली जगह सीमेंट वाला फर्श है बाजू में शटर लगी हुई है इसकी दीवाल में व्हाईट कलर पुता हैं एक चेयर है।

यहां एक ब्यूटी पार्लर है ब्यूटी पार्लर एक मिरर लगा हुआ है या एक क्रीम कलर का पर्दा लगा हुआ है एक एसी लगी हुयी हैं।

टावल रखी है जो पीले कलर की है। और उस घर ए.सी लगा है उसका छत सफ़ेद कलर का है और सामने आइना बना--

ये एक ब्रिज है जिसके आजु बाजू सीमेंटेड पट्टी बनी हुई है यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने कत्थाई पैंट और काला टीशर्ट पहना है उसके हाथ मे हेलमेट है और इधर आसमान दिख रहा है जो दो कलर में है नीला है और ब्राउन कलर है।

सामने दोठु बसे खड़ी हुईं है जे हैं स्कूल बस है जिनका कलर पीला है एक आदमी जा रहा है एक टू व्हीलर का बाइक है।

उसने काली शर्ट और ग्रे कलर का पैन्ट पहना है उसकी गाड़ी में नीला दूध का डब्बा टंगा है तीन ठो दो ठो झाड़ दिख रहे है जो एक पीला है हरा दिख रहा है सामने एक ईमारत दिख रही है जो सफेद कलर की है उसमें एक बैनर लगा हुआ है जिसमें --